इसमें एक हरे कलर की मेड बिछी हुई है।

यहाँ पर हम लोगो को एक लड़का बैठा हुआ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इमेज में हम लोगो को सलिया दिखाई दे रही है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा। यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है। ये ऊपर नीले--

दो तीन टैम्पो दिखाई दे रहा है दो गाड़ी दिखाई दे रहा है इसमें एक गेट लगा हुआ है रेड कलर से पेंट किया हुआ है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

नीले कलर की बुक दिखाई दे रही है। इसमें कुर्सी पर बैठा हुआ लड़का इसमें बोतल रखी हुई है।

यहाँ पर दो तीन लग खड़े हुए है इस इमेज में हमको कुर्सी दिखाई दे रही है मॉल दिखाई दे रहे है यहाँ पर दीवाल दिखाई दे रही है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

चारो तरफ प्लेटे बनी हुई है। एक मशीन दिखाई दे रहे है। तार दिखाई दे रहे है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इस इमेज में हम लोगो को एक गार्डन जैसा दिखाई दे रहा है इसमें सामने एक फैक्ट्री बनी हुई है जिसमे--

इस इमेज में हम दो गाड़ी दिखाई एक कार दिखाई दे रही है जिसमे में वाइट कलर का पैन्ट किया गया है एक ठिलया दिखाए दे रहा है जिसमे--

उम् येलो कलर और ब्लैक कलर पेंट किया गया है इसमें चारो तरफ पानी-पानी दिखाई दे रहा है ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रहे है देखने में बहुत अच्छी सड़क--

इस इमेज में हम लोगो को लड़की एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी बहने खड़ी हुई है।

और ये लेडिस बैठी हुई हैं ये सब इसमे बहोत सारे कंबल पहने हुए बैठे हुए हैं।